जिन्होंने नीले कलर की शर्ट पहनी हुई है और नीचे काले कलर का कुछ पहना हुआ है फ्रॉक पहनी हुई है और यहाँ पर टीचर्स हैं।

यहाँ पे एक बड़ी नदी है। इसके पुल बना हुआ है जहाँ पे बहोत सारे लोग --

नहा रहे हैं। कुछ गाड़ियाँ धुल रहे हैं।

यहाँ पे एक बड़ा हाल है जहा पे डाइनिंग टेबल लगा हुआ है बहोत सारे।

की गयी है और उसमे लाइटिंग लगी है बहोत सारे। आजू-बाजू भी यहाँ पे सफ़ेद --

पेट्रोल पंप है। नीचे कर्मचारी हैं।

रात के समय का फोटो है। काला आसमान दिखाई दे रहा है। --

काले कलर की।

यहाँ पर बहोत सारे छोटे बच्चे और बड़े कुछ लड़के यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं एक बड़ा मैदान है।

एक खराब पेड़ मुझे दिखाई दे रहा है।

वैन के ऊपर जा रहे हैं।

ऊपर नीला आसमान दिखाई दे रहा है और यहाँ पर --

इसमें ये अपना काम कर रहे कर्मचारी लोग दिन में।

यहाँ पर एक हुई है सफेद कलर --

यहाँ पर पीछे अम्म --

यहाँ पर बहोत सारे टंगे हुए है। दिखाई दे रहा है।

दिन के समय के --

कपड़े पहने हैं और चूड़ी पहने हुए हैं।

यहाँ पे स्टंप लगे हुए हैं। स्टंप का रंग --

दिखाई दे रहे हैं। आजू-बाजू में मुझे खेत दिखाई दे रहे हैं और ये दिन के समय का फोटो मुझे --

बहोत सारे पुतले बने हुए हैं। सफेद कलर के कपड़े पहने हैं पुतलों ने।

यहाँ पर लाल कलर का बैनर लगा हुआ है दीवारों का रंग लाल है।

बोर्ड लगा हुआ है। यहाँ सामने काँच का गेट लगा हुआ है। बाहर मैदान है जहा पे टेबल लगा है।

ये एक जिम ये एक हेयर सैलून की फोटो है। यहाँ पर काँच का गेट लगा हुआ है।

सबकुछ। ऊपर नीला आसमान मुझे दिखाई दे रहा है।

दो बन्दे जा रहे हैं। सामने एक बड़ा रोड है।

यहाँ पर बहोत सारे चेयर्स लगे हुए हैं।

ये सब एक लाइट हैं। नीचे-नीचे सफेद टाइल्स डले हैं।

उपर नीला आसमान दिखाई दे रहा है। बड़े घर यहाँ पे बिल्डिंग दिखाई दे रही है। टावर दिखाई दे रहा है।

सफ़ेद बादल दिखाई दे रहा है और यहाँ पर एक हरा मैदान दिखाई दे रहा है।

और यहाँ पर पीले कलर की दीवार मुझे दिखाई दे रही है।

साइड में दीवार है। दीवार पर नारंगी रंग है और ऊपर आसमान दिखाई दे रहा है।

खुला आसमान सफ़ेद बादल दिखाई दे रहे हैं और तार--

यहाँ पर एक आदमी है जोकि व्यक्तिगत है और इसने सफ़ेद कलर के कपड़े पहने हुए है ऊपर कुरता और नीचे पैजामा।

और यहाँ कर रहे हैं। नीचे कार्पेट डली है लाल कलर --

यह बहोत बड़ा कॉलेज है उसकी फोटो है ये।

यहाँ पर एक बोर्ड दिखाई दे रहा है।